एक बहुत बड़े घर का फोटो है घर का कलर व्हाइट और ब्लू है इसमें बहुत सारे खिड़की भी है।

यह एक बहुत बड़े दुकान का फोटो है यहां पर बहुत सारी दुकानें हैं।

यहां पर एक सेटर भी है यहां पर बहुत सारी सीढ़ियां भी है।

रेलिंग लगाई हुई है यहां पर बहोत सारी पाइपें लगाई हुई है यहां पर एक गेट भी लगाए हुआ है।

यहां पर बहुत सारी टेबल और कुर्सियां रखी हुई है जिसका कलर ब्लू है।

यहां पर बहुत सारे लड़की और लड़के बैठे हुए हैं यहां पर उनके हाथ में पेन रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है यहां पर बहुत सारी कपड़े रखे हुए हैं।

इसका कलर ब्लू और व्हाइट है यहां पर बहुत सारे नीचे में बहुत सारे टाइल्से लगी हु लगाई हुई है।

यहां पर बाहर में बहुत सारी पेड़ है। यहां पर एक खिड़की भी है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

यहां पर बहुत बड़े बड़े खंबे भी लगे हुए हैं जिसका कलर ऑरेंज है यहां पर बहुत सारी तारें लगी हुई है यहां पर नीचे बहुत सारी सामानें रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारी बोड लगी हुई है यहां पे बहुत सारे आदमी हैं एक आदमी के हाथ में हेलमेट भी है।

उसके ऊपर बहुत सारे फूल फेंकी हुई है यहां पर बहुत सारे अगरबत्ती भी जल रही है यहां पर बहुत बड़े बड़े गेट भी--

एक बहोत बड़े रुम का फोटो है रुम में बहोत सारी टेबल और कुर्सियां है जिसका कलर ब्लू है।

यहां पर बहुत सारे लाइटें लगाई हुई हैं यहां पर एक तार भी है।

यहां पर बहुत सारी चार्जरें भी रखी हुई है जिसका डिब्बा का कलर ब्लू है।

यह एक बहुत बड़े घर का फोटो है घर में बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं।

जिनमें बहुत सारी शीशें लगी हुई है। यहां पर एक आदमी खड़ा है जो कैमरे से सूट कर रहा है।

यहां पर दो ठो कुर्सियां रखी हुई है जिसका कलर लाल है यहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई और टेबले भी है।

यहाँ पर दो रो टेम्पू भी है यहाँ पर बहुत बड़ा कार्पेट है जिसका कलर लाल है।

यह एक बहुत बड़े शादी का लॉज का फोटो है यहां पर बहुत बड़ा एक घर भी है यहां पर बहुत सारी पर्दे लगाए हुए हैं जिसका कलर ब्लू व्हाइट पिंक वाइट है।

यहां पर एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है यहां पर एक कुर्सी भी है।

यहा पर एक पंखा भी लगा हुआ है। यहा पर नीचे में बहुत सारी स्टाइल्से लगी हुई हैं।

यह एक लाल रंग की टोकरी है जिसमें बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं।